बहुत सारे कलर के दिखाई दे रहे हैं और नीचे में हरा रंग का--

और सामने में काला रंग का गाड़ी दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में काला रंग का टंकी है।

और दो खिड़की हैं जिस पे पर्दे लगे गए हैं जो हरे रंग के दिखाई दे रहे है और बीच में एक लाइट दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद रंग का है।

और एक लड़की जो साड़ी पहनी है--

और हाथ में सफेद रंग का पेपर लिए कुछ बोल रही है।

और एक सामने से बहुत ही लम्बा झंडा है जो सफ़ेद और नारंगी कलर का दिख रहा है और एक सफ़ेद रंग का गाड़ी खड़ा है।

लाइट दिखाई दे रहा है और ऊपर से झरना गिर रहा है जस का पानी का रंग सफेद है और एक व्यक्ति--

पीछे में बहुत सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं।

जहाँ पर ऑडियंस का बैठने का जगह है टेबल दिखाई दे रहा है।

और एक बहुत बड़ा नाव है जो काले रंग का है।

ये एक दुकान है जहाँ पर बहुत सारा सामग्री दिखाई दे रहा--

यह एक घर है घर के ऊपर पोस्टर में एक बुलेट लगा है और सर्विस सेंटर --

एक आदमी खड़ा होके फोन में फोटो खींच रहा है और दो को स्टैच्यू दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे कांच के गेट दिखाई दे रहे--

यह एक बैंक है जो आसमानी रंग का है बैंक के ऊपर लिखा हुआ भारतीय स्टेट बैंक ।

सामने में हरा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और कुछ चट्टानें दिखाई दे रहे हैं पीले रंग के हैं।

और एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है और लाल रंग का सर्ट पहना खड़ा है और--

घर दिखाई दे रहा है जो सफेद और लाल रंग का है और--

और कुछ नीचे में बैठे हुए हैं और कुछ हाथ में फोन चला रहे हैं।